इसके चारों तरफ नीला आसमान और कुछ बदल दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के सामने की ओर बहोत सारी गाड़ियां कुछ कार--

दो व्यक्ति सामने की ओर मास्क लगा कर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति काले कलर का शर्ट पहने हुए क्योंकि महिला नजर आ रही है।

ऑडिट भवन के नीचे ही मेन गेट पर लाइटें लगी हुई हैं और चार से पांच मोटरसाइकिल और स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये दो गार्डन की फोटो नजर आ रही है और यहाॅं पर कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं यहाॅं पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

को सफेद कलर से कलर किया गया है और यहां पर दो सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

के साथ में ही कुछ पुलिसकर्मी और कुछ बड़े अधिकारी जोकि लोगों को कुछ सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कुछ--